शैंपू पाउडर तेल सभी दिखाई दे रहे हैं नारी की सुंदरता का सारा सामान --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

प्रिंसिपल का कमरा दिखाई दे रहा है दीवार पर अम्बेडकर महात्मा गांधी की फोटो दिखाई दे रही है।

यह एक मस्जिद दिखाई दे रही है आसपास लोग भी नजर आ --

बगीचे का सौंदर्य हरियाली के कारण--

एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के आगे पूजा का सामान रखा हुआ है।

छोटी मोटी साइकिल कार जीप सभी तरह के उपलब्ध हैं बच्चे इस खिलौनों को --

बोलो यहां पर एक बड़ा हॉल है यहां पर व्यक्ति इकट्ठे हुए हुए हैं दीवार --

खिड़कियां सब लोहे की नजर आ रही है एक तरफ लाल बिल्डिंग दिखाई दे री है एक तरफ सफेद --